इस पिक्चर मुझे एक मॉनेस्ट्री दिखाई दे रहा है जो की ऑरेंज ऑरेंज येलो कलर का है।

पत्थर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो की ग्रे टी शर्ट और चेक चेक पैंट में बैठा हुआ है जो कि बाहर की ओर देख रहे हैं।

के बाद उसमें ढेर सारा इंसान लोग कुछ अअ प्रोग्राम देख रहा है जिसमें--

कुछ लोग फोन में बिजी है कुछ कैमरामैन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके नीचे स्टोर लगा हुआ है हार्डवेयर का।

मुझे इस पिक्चर में एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें चार पांच विंडो दिखाई दे रहा है मुझको।

मुझे इस पिक्चर में चार हट दिखाई दे रहा है जोकि खेर का है और एक छोटा सा घर है जो जिसकी रूफ टीना है।

पिक्चर मे नीला आसमान दिखाई दे रहा है साथ ही कुछ सफेद बादल है और एक दो तीन घर है जिसके जो कि बैंबू से बना है जिसका रूफ खेर का है और एक टीना का है।

इस पिक्चर मुझे अ छे रेक दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर ऊपर वाला सेल्फ में रखा है लेनेवो लैपटॉप्स --

एंड एसुस का लैपटॉप है एंड माउस है उसमें।

मुझे इस पिक्चर में ढेर सारा रैक दिखाई दे रहा है। जिसमें बैंगल्स लगे हुए है। जिसको एक पिंक कलर का होल्डर में लगाया हुआ है। जिस जोकि एक कांच का है।

फेंस के बाहर एक छोटा सा रेड कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

बगल में एक छोटा सा हाट है जिसमें छोटा सा ग्रॉसरी शॉप है।